इस मस्जिद के अंदर एक चेयर रखी हुई है।

और एक वाटर कूलर भी दिखाई दे रही है।

और बहोत से बड़े आ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत अलग अलग साइजेज के साइकल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सीलिंग पे लटकी हुई फैन भी नजर--

जिन गमलों में पौधे उगे हुए--

जिस रूम के अंदर एक अलमीरा बनी हुई है।

और उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है।

और एक बच्ची भी गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है।

इसके पास एक महिला खड़ी नजर आ रही है।

उस दुकान में दही घी पनीर रसगुल्ला मिलता है।

और झारखंड भी लिखी हुई है उसमें--